दृश्य में हमें एक टेबल दिखाई दे रहा है टेबल में एक प्लेट रखा है जिसमें चार बोटियां है जो कि चिकन की है।

यहाँ पे कई ड्रेस पुतलों मे लटकाए गए है ये काफी खूबसूरत लग रहे है।

मॉल के बाहर हमें कई पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है लाइट्स भी बहुत अच्छे से लगाया गया है।

इन हिरणों को एक तार से घेरा हुआ है ताकी ये बाहर ना आ सके साथ ही साथ हमें कई पेड़ भी देखने को मिल रहे है यहाँ पर हरयाली छाई है।

यह दृश्य एक कॉलेज की है कॉलेज की तस्वीर बाहर से ली गई है साथ ही साथ हमे बहुत से व्यक्ति आते-जाते नजर आ रहे है।

दृश्य में हमें एक माल गाड़ी जाती हुई दिख रही है ऐसा प्रतीत होता है जैसे की इस माल गाड़ी के अंदर कोयला रखा हुआ है।